अगल बगल कोई भी नजर नहीं आ रहा है पीले कलर की और रेड कलर की कुर्सियां यहां पे रखी हुई हैं।

यहां हमें एक सॉप दिखाई दे रही है यह सॉप काफी ज्यादा बड़ी--

और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लाइट्स यहां पर लगी हुई है और कुछ लोग यहां पे कैरम खेलते हुए शायद खड़े दिख रहे--

और यहां पर आप देख सकते है की बहोत ही सुन्दर तरीके से--

यह एक बहोत ही सुंदर सी डॉल की दुकान है जहां पर बहोत सारी डॉल्स हमें दिखाई दे रही हैं।

पर हमें कोई कार्य करते हुए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

मशींस दिख रहे हैं काफी बड़े बड़े कुछ समझ नहीं आ रहा है यह किस प्रकार का मशीन है।

कुशवाहा लाइन होटल ढाबा है यह रात का समय है चारों तरफ लाइट्स जल रही हैं।

और सड़क के उस साइड हमें कपड़ों के बड़े बड़े मॉल्स --